किसी मस्जिद जैसे एरिया को दिखाया गया जहाँ पर बहुत सारे--

ये लोग दिखाए जा रहे हैं जहाँ पर सामने में चप्पल रखे हुए स्टैंड में दिखाए जा रहे हैं कुछ लोग कैप पहने हुए हैं वाइट कलर में ब्लू कलर में ब्लैक कलर में--

कुछ फैन भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए कुछ लोग खड़े दिखाई दे--

और बहुत सारी काई जम जाने की वजह से ग्रीन जैसी दिखाई दे रही है पानी नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है वाइट कलर में--

खंभे जैसे दिखाई दे रहे हैं नीचे बहुत सारी जैसी भी चलती हुई दिखाई दे रही है।

जमीन पूरी सूखी सी और कहीं पर ही पानी भी हल्के से दिखाई दे रहे हैं ग्रे कलर की सीमेंट या बालू टाइप की--

किसी रोड को दिखाया गया है जहाँ पर एक लेडी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं नीचे जमीन कुछ भी--

दे रहे हैं और एक आम का पेड़ भी दिखाया गया और एक पौधे में बहुत सारी पिंक रेड कलर की फ्लावर दिखाई दे रही है वाइ--

किसी घर को दिखाया गया है जो कि वाइट कलर का है और सामने में ग्रीन जैसे दरवाजे दिखाई दे रही है बहुत सारे ब्लैक कलर के छोटे-छोटे से हॉल दिखाए जा रहे हैं सामने में--

बहुत सारे सामान रखे हुए हैं नेल रिमूवर जैसे--

कुछ परफ्यूम के बॉटल भी फेके हुए हैं सामने में कुछ टीशर्ट कुछ हाफ पैंट टॉप्स वगैरह रखे हुए हैं।

वाइट कलर के थर्मोकोल के बास्केट दिखाए जा रहे हैं जिसमें ब्राउन कलर का सेलो टेप लगा हुआ है जैसे --

लेडीज और एक लड़के को दिखाया गया है एक लड़का पत्थर पर बैठे हुए ब्लैक कलर के शर्ट पहने चसमे पहने हुए--

सामने में एक नाँव को दिखाई जा रही है जो कि इस वाइट कलर --

पर उसे सीढ़ियां भी जाती हुई दिखाई दे रही है बाहर में कुछ लाइट जलते हुए दिखाई दे रहे हैं फिफ्टी रेड कलर --

ये बच्चे के कपड़े की दुकान को दिखाए गए हैं जहाँ पर बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं कुछ--

येल्लो कलर में बाहर साइड में बहुत सारी फोर व्हीलर लगी हुई है कुछ पेड़ पौधे भी दिखाए जा रहे हैं अंदर में कुछ खजूरे या सुपाड़ी के पेड़ जैसे दिखाए जा रहे हैं वाइट कलर की पूरी बिल्डिंग को--

कुछ ब्लैक बोर्ड में वाइट कलर से कुछ लिखा हुआ है अंदर साइड में बहुत सारे लड़के छोटे-छोटे बच्चे दिखाए जा रहे हैं ब्लैक कलर की बड़ी सी ग्रील वाले--

बच्चे दिखाई दे रहे हैं कुछ लड़कियां नीचे सर झुकाई हुई बैठी दिखाई दे रही है।

खंबा दिखाया गया है वाइट्स दिखाई गई है नारियल के पेड़ को दिखाया गया है सामने में गार्डन जैसे एरिया दिखाया गया है गमले दिखाया --